लाल सफ़ेद सब कलर के फूल लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग यहाँ अंदर भी जा रहे हैं।

यहाँ पे किसी के छे पंखे मुझे दिखाई दे रहे है।

बोहोत सारे हरे पेड़ दिखाई दे रहे कुछ पेड़ हैं। यहाँ पे रोड पे बना हुआ है नीचे मैदान है बंजर मैदान है।

मंदिर बना हुआ है यहाँ पे एक पुजारी है जो इनकी पूजा कर रहा है।

गुलाबी कलर के पीछे सफ़ेद कलर के परदे भी लगे हुए है। साइड में सफ़ेद कलर के पर्दे लगे हैं।

नीचे टाइल्स लगी हुई है और काउंटर का कलर हल्का ब्लैक और पीला कलर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है हल्का --

एक आदमी बैठा है जोकि काम कर रहा है। एक लैपटॉप यहाँ पे दिख रहा है। दो लैपटॉप मुझे दिख रहे हैं।

लोग यहाँ पे फोटो ले रहे हैं। कुछ लोग घुम रहे हैं। कुछ गाड़ी यहाँ पे पार्क हैं।

यहाँ पे एक बड़ा जहाज मुझे दिखाई दे रहा है जिसपे सामान ढो ढो रहे हैं।